एक बड़ों स्विमिंग पूल दिख रियो है बिंग मा अलग अलग टाइप मे लाइना आ बनाईडी है नीला बेल्ट की लाइना बनाईडी है स्विमिंग पूल के चारों मेर पेड़ पौधा लागेड़ा दिख रिया है एक डोली दिख रही है।

एक ऊंचो पर्वत सो दिख रियाे है बीपर आदमी चढ़ता दिख रहिया है एक आदमी ऊंचो पुग्यो बाकी आदमी रास्ता मे चाल रहिया है एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहरबा मेली है जको सबका नीचे चल रियो है।